यह एक दुकान है यह मॉल के तरह देखने में लगता है इसमें बहोत सारे सामान है बहोत सारे डब्बे रखें हुए है ।

यहां पे बहुत सारे कपड़े साजे हुऐ है।

यह एक बिल्डिंग है देखने में बहुत अच्छा लगता है यहां पर बहुत सारा आदमी है ये पेड़ हैं ये बहुत अच्छा है ये पंजी है यह पन्नी टांगा हुआ है पता नहीं क्यों टांगा हुआ है यहां पर बहुत सारा आदमी है।